और बिल्डिंग के बाहर कुछ लोग हैं जो कि खड़े हुए हैं।

और एक पुरुष है जो आगे की ओर खड़ा हुआ है।

दो रिक्शे हैं जो कि खड़े हुए हैं। एक बैटरी रिक्शा है दूसरा टम्पू ट्रेवल टाइप का है।

दोनों ही लाल रंग के हैं।

दो बुद्ध भगवान की यहाँ तस्वीर है एक नीचे और एक ऊपर।

और ये जितनी भी दुकान हैं उनका उपर की ओर एंट्री है।

साथ में अ टेंट्स जो हैं वो बो के डिजाइन में बाँटी गयी हैं टेबल्स के ऊपर।

ये बुक्स ढूंढ के लोगों को दे रहा है।

और रोड के साइड में होल्डिंग्स लगी हुई हैं बोहत ज्यादा।

जिन्होंने चेक शर्ट पहनी हुई है।